यहाँ पे मुझे हौंडा का शोरूम दिखाई दे रहा है यहाँ पर हौंडा छत्तीसगढ़ भी लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है उसमे--

यहाँ पर मुझे कुछ आदमी कुर्सी पे बैठे हुए दिखाई दे रहे है एवं एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो कुछ पोस्टर मे प्रेजेंटेशन बता रहा है एवं--

यहाँ पर मुझे एक धरम साला दिखाई दे रही है जिसमें बहुत से प्रतीक्षार्थी बैठे हुए है कुछ के हाथ में बैग हैं कुछ बैठे हुए एवं कुछ खड़े हुए दिखाई दे रहै हैं।

यहाँ पर मुझे बड़े आकार की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो खिड़कीदार है एवं लाल रंग की पत्तियां भी बनी हुई है आसपास बहुत सी मोटरसाइकिल --

यहाँ पर मुझे माता जी झांकी रखी हुई दिखाई दे रही है जिसे आसपास पर्दो से सजाया गया है एवं नारंगी पिले --

रोड निकला हुआ दिखाई दे रहा है रोड पर कुछ लाल रंग के धब्बे भी है एवं कुछ पिले रंग के धब्बे भी दिखाई दे रहे है कुछ खम्भे भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

लाल रंग पर्दे भी लगे हुए है एवं कुछ पिले रंग के पर्दे भी दिखाई दे रहे है कुछ लकड़ियाँ एवं बॉस के डंडे भी बांधा गया है।

कुछ लोग अपने - अपने थैले हाथ में लिये हुए बैठे हुए है एवं कुछ लोग खड़े हुए भी दिख रहे है आस - पास पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर मुझे एक बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें सफ़ेद कलर का पानी भरा हुआ है कुछ बड़े - बड़े सफ़ेद पत्थर भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर मुझे एक बड़े से पत्थर पर कुछ मुर्तियां बनी हुई दिखाई दे रही है यह एक सबसे बड़ी वाली मूर्ति विष्णु भगवान की दिखाई दे रही है आस - पास कुछ --

यहाँ पर मुझे एक पर्वत दिखाई दे रहा है जिस पर हरे - भरे पेड़ - पौधे लगे हुए है कुछ पेड़ो पर फूल भी लगे हुए दिखाई दे रहै है एवं कुछ पत्थर भी --

यहाँ पर मुझे कपड़ो का मॉल दिखाई दे रहा है जहाँ पे ट्रेंडस लिखा हुआ है एक ड्रेस पहने हुए लड़की खड़ी हुई है एवं कुछ--

यहाँ पर मुझे आधार एम्प्लॉयमेंट एंड अपडेशन सेंटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है डिपार्मेंट ऑफ़ पोस्ट --

दिखाई दे रहै है कुछ फलो को ऊपर शोपीस के लिए टांगा हुआ है।

यहाँ पर मुझे इंडियन का पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जिसपर डीज़ल एवं पेट्रोल लिखा हुआ दिख रहा हैं।